यहां पर एक बहुत बड़ी दुकान है जिसमें बहोत सारा सामान रखा हुआ है बिस्कुट नजर आ रही है चिप्स नजर आ रहे है फेवी क्विक नजर आ रहे है और एक फ्रिज भी नजर आ रहा है।

कौन सी मूर्ति है शक्ल नहीं दिखाई दे रही है और यहां पे पेड़ पौधे भी बहुत सारे नजर आ रहे हैं और यहां पे व्यक्ति भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं और --

यहां पे सैलून की शॉप है जहां पे सैलून के चिक्कर दाढ़ी वगैरा कटिंग वगैरा चिपकाई गईं है और यहां पे एक स्कूटी भी खड़ी है और

यहां पर पहाड़ी एरिया है जहां पे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए नजर आ रहे हो और उनके ऊपर छोटे छोटे छोटे छोटे पेड़ पौधे भी उग रहे है और यहां पे --

यहां पे मिनी टाइप से बना हुआ है महाराज की मूर्ति अभी बहुत सारी लगी हुई है यहां पे काफी डिजाइन से बनाया हुआ मंदिर है और एक --

मतलब यहां पे डॉक्टर रहते हैं और यहां पे मीटर वगैरा भी लगे हुए नजर आ रहे हैं और यहां पे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं गेट भी लगी हुई नजर आ रही है।

यहां पे सैलून की दुकान है दाढ़ी कटिंग बनाई जाती है और यहां पे एक व्यक्ति के टांगे नजर आ रही हैं और शुभ लाभ नाम लिखा हुआ है कैंची भी मंडी हुई है और दाढ़ी कटिंग के --

और यहां पे आर_सी_सी मे काम चल रहा है नीचे बलियां वगैरा लगी हुई है एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है एक कुछ एक व्यक्ति बैठा हुआ नज़र आ रहा है।

ऊपर ब्लॉक से वो बनाई जा रही है बिम बन गई है और आर_सी_सी के सरिए नजर आ रहे हैं यहां पर --

व्हाइट कलर की डिजाइन से काफी शानदार टाइल लगी हुईं हैं और डिजाइन भी अच्छी बनाई गई है और पिलफाई भी लगी हुई है और --

और घड़ी भी नज़र आ रही है कैमरा भी लगा हुआ है बत्ती भी यहां पे एक बत्ती भी लगी है जो चस रही है और लाइट फिटिंग भी किया गया है दिखाई दे रहा है व्हाइट व्हाइट सा।

और कुछ लोग गिटार भी बजा रहे हैं और ट्यूबलाइट भी लगी हुई है पास में एक पेड़ भी नजर आ रहा है।

और यहां पे हीरो मतलब साइकिलों का भी शोरूम है मोती साइकिल ऐसा सा नाम लिख रखा है माला भी है।

ये जिम वाला है जहां पे जिम के समान पड़े हुए हैं डायरेक्टर में जो जिम के उठाने वाली है।

गमले पड़े हैं जिनके अंदर फूल भी है और काफी कैमरे भी लगे हुए है लाइटें भी लगी हुई है इसके अंदर।

जिसमें एक पंखा ब्लैक कलर का लगा हुआ और बहोत सारे झरोखे भी नजर आ रहे हैं इसमें--

स्टूले भी छोटी छोटी पड़ी हुई है काउंटर भी पड़ा है इसके अंदर और यहां पे वॉटर कूलर भी पड़ा है और भी सामान नज़र आ रहा है।

यहां पर एक शॉप है और यहां पे बाहर पर्दे भी सुखाई दे रहे हैं एक तोता कलर है एक लाल कलर है।

यहां पे मतलब एक शॉप बना हुआ है जहां पे टाइल्स मिलती है कलर मिलते हैं इलोट्रॉनिक सामान मिलता है बहोत बड़ी दुकान भी है।

मेट्रो नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है और यहां पे सेल भी है और यहां पे बहुत बड़ा --